एक काला बैग है सामने सामान रखा है।

एक हैंगर है उसमें स्कर्ट लगे हुए हैं।

यह एक किला है। किला बहोत बड़ा है।

जो की पुराना है। किचन में एक कलश पड़ा हुआ है जिसके ऊपर गणेश का निशान है।

यह एक कूलर की दुकान है जहां पर दो कूलर नये पड़े हुए हैं यहां पर बलब भी है और--

इसमें बहुत सारे लोग खाना खा रहे हैं यहां पर--

और एक एक्टिवा खड़ी है इसके ही पास में एक मेडिकल है।

हैं जिसमें फ्रेशर्स लिखा हुआ है साइड में डेक लगा हुआ है।

यह एक मशीन है जिसका नाम एस_के जासूस है।

जो लाल रंग का और हरे रंग का है।

यहां मशीन है मशीन का रंग काला है।

यह एक कृष्ण भगवान का स्टेज शो है। यहां पर सभी लोग आए हुए--